और इसमें एक नाली भी बहा है जोरी टाइप का और इसमें एक तार घीचा हुआ हमको दिख रहा है।

ए बीच में पानी हमको दिख रहा है इस फोटो में और चारो बगल से यहाँ पेड़ दिख रहा है और पानी बहुत भरा हुआ है इसमें कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसके नदी किनारे खड़े हैं और बहुत सारे लोग इधर-उधर से देख रहे हैं।